जहाँ कई सारी बसे खड़ी हुई हैं सामने की ओर दो व्यक्त आ रहे हैं।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

यहाँ सामने की ओर एक ‍‍बड़ा-सा मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ एक ऑटो और एक अ एक बाइक भी दिखाई दे रही हैं।

दिखाई दे रही हैं और नीचे की और मट्टी है। सामने की ओर ईटो की दीवार दिख रही है।

यहाँ सामने की और एक बड़ी सी दुकान है दिखाई दे रही है जहाँ ऊपर की और प्रभात स्टेशनरी बुक हाउस लिखा हुआ है।

यहां सामने की ओर एक बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है जिसमे अंदरों की ओर कई सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

दिखाई दे रहा है जहाँ बहुत सारा लोहे का नीचे की ओर सामान रखा हुआ है।

यहाँ सामने की ओर एक बड़ी-सी दुकान--

यहाँ सामने की ओर एकअअ पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे दो ट्रेक्टर --